यहां पर शादी का पंडाल लगा हुआ है जिसे बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट किया गया है और कुछ फूलों को लटकाया गया है और कुछ फूलों को नीचे रखा गया है जो की बहुत ही प्यारा है ।

यहां पर एक मंदिर है एक घंटी भी है यहां पर कुछ बोरे भी रखे हुए हैं।